और एक आदमी ने पगड़ी पहने रखी है।

और यहां पर एक औरत पेड़ पौधों में--

आप यहां पर देख सकते हो यहां पर छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रही हैं।